यह एक चित्र है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक--

चित्र है इसमें दिखाया जा रहा है।

यह एक चित्र है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक फल फ्रूट की दुकान है।

जैसे की टूटी हुई बाल्टी एक स्टूल और एक लकड़ी की टेबल भी पड़ी--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

यह एक चित्र है इसमें दिखाया गया है कि एक तस्वीर ली गई है।

बाहर येलो कलर के काफी सारे बैरिकेट्स --

यह एक चित्र है यह तस्वीर ली गई है वो भी एक--

एक चित्र है इसमें दिखाया गया है।

जिसमें एक ढाबे की टेबल को दिखाया जा रहा है उसके टेबल के पास में--

यह एक टाइल्सो की दुकान है जहां पर--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

जहां पर एक पलंग बिछा हुआ है और उस पर एक तकिया।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

उसके साइड में एक बड़ा सा पुल भी है।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

और पीछे कई सारी महिलाएं भी बैठी हुई है।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

मेरे ख्याल से खेतों में प्रेस्टीज सीड डाल रहे है और--